दरवाजे के ऊपर तोरन लगा हुआ है।

यह किला लाल कलर के पत्थर से बना हुआ है इस किले के बाहर--

दिखाई दे रहा है। एक ये स्टेशन --

फूलों से सजाया हुआ है इस चर्च में गुब्बारे ही गुब्बारे दिखाई दे रहे।

बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

चित्र मे दिखाई दे रहा है एक--

इस पहाड़ से एक झरना बहेकर--

होटल का नाम होटल रजत फैमिली रेस्टोरेंट है।

इस दुकान के बाहर मुडो पर कुछ लोग बैठकर चाय पी रहे--

इस केबिन के अंदर एक सोफा रखा हुआ है।

और सामने एक सेंटर टेबल रखी हुई है।

एक प्रेशर पंप दिखाई दे रहा है।

यह ऑफिस एक पैकिंग एंड मूविंग कंपनी का है।

बाहर एक घंटा लगा हुआ है।

इस स्टेज पर एक सोफा रखा हुआ--